और बिजली के खंबे भी दिखाई दे रहे हैं जो कि काफी लंबे और सफेद दिख रहे हैं यहाँ पर घाँस भी लगी हुई है जो कि काफी हरी-भरी दिखाई दे रही है यहाँ पर बहोत सारी पेड़-पौधे लगे हुए हैं और पौधे भी लगे हुए हैं जो कि काफी हरे-भरे हैं।

यहाँ पर हमे एक दरवाजा दिखाई दे रहा है जो काफ़ी बड़ा लग रहा है और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ पर नीचे कुछ गेट भी लगे हुए हैं जो की लाल कलर के लोहे के है।

बना हुआ है जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है और दूर दूर तक हमें बहुत सारे पहाड़ दिख रहे जो की काफ़ी हरी भरी है यहाँ पर नाओ भी देख--